बड़े-बड़े ए ए पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है बोहत दूर दूर तक के बेंच भी लगी हुइ है आसपास बहोत सारे छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी लग गए है यहा की जमीने पक्की हैआसमान नीला है।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

बिल्डिंग दिखाई दे रहा उसमें एक ब्लैक कलर का टंकी भी दिखाई दे रहा है बहोत सारी चेयर भी दिखाई दे रही है बेंच भी दिखाई दे रहे यहाँ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रही है जमीनें हरी-हरी है घास उगे हुए हैं यहाँ की जमीनें क --

इस मस्जिद की दीवार की कलर वाइट है इस मस्जिद मे बहुत सारे गुंबद भी बनाये गए है इस मस्जिद के बाहर अल्लाह भी लिखा गया है ।

बहोत ही खूबसूरत सी मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद का गेट दिखाई दे रहा है जिसमें लोहे का ग्रिल भी दिखाई दे रहा है एक टावर भी दिखाई रहा है जहाँ दो दो लाइटें जल रही है लैंपोस्ट जल रही है बहोत सारी --

इस मस्जिद के ऊपर एक तार भी दिखाई दे रहा है जिसमे चोंगे लगे हुए है बहोत छोटी बड़ी गुंबते भी बनाई गई है मस्जिद व्हाइट कलर की है इस मस्जिद मे बहोत सारे कन्स्ट्रक्शन के काम चा--

बहुत ही खूबसूरत सा बेकरी का दुकान है जिसमे बहुत सारे स्वीट्स केक्स कूकीज भी रखे गए है बहुत सरे बलून्स और डेकरैशन भी हुआ है पिक और वाइट कलर का बलन है छोटी बड़ी लाई - लाइटें भी लगी हुई है एक दो लोग भी दिख रहे है।

आस-पास बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है हरे-भरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है दो बकरियां भी दिखाई दे रही है जो की बैठी हुई है। यहां--

एक साइकिल भी दिखाई दे रहा है बहुत सारी कच्ची- कच्ची इटे भी दिखाई दे रही है एक दो लोग जा भी रे है बहुत सारी स्टॉल लगाई गई है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ।

मस्जिद के अंदर की ली गई तस्वीरे है इसमे एक पंखा भी दिखाई दे रहा है इसकी छत व्हाइट है और ब्लैक बार्डर दिया गया है इस मस्जिद की--

मैकेनिकल की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर एक बाइक रिपेयर कर रहा है दो चैयरे भी रखी गई है लोहे का गेट भी दिखाई दे रहा है इस बिल्डिंग की कलर येलो है इस बिल्डिंग के पास में एक चापाकल दिखाई दे रहा है।